और उसके सामने छोटे छोटे पौधे हैं।

मुझे यह एक मंच दिखाई दे रहा है।

दो आगे की ओर और तीन पीछे की ओर--

सामने एक अल्टो रेड कलर की कार खड़ी है।

ठीक कर रहा हैं और उसके सामने वैक्यूम क्लीनर है।

मुझे यहां एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है जिसके सामने दो आदमी खड़े हुए हैं।

मुझे यहां एक पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है जो की ईटानगर अरुणाचल प्रदेश पे है।

और सामने में पुलिस का साइन बोर्ड लगा हुआ है।

मुझे यहां भारत पेट्रोलियम पेट्रोल का टंकी दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां एक कमरे के अंदर बहोत सारे सामान दिखाई दे रही हैं।

और उनके पीछे मुझे तीन इमारतें दिख रहीं हैं।